पंखा भी काले रंग का है जो इसकी छत पर लगाया हुआ है।

साफ सफाई का भी यहाँ अच्छा ध्यान रखा गया है।

दो घर भी यहां बनाए हुए हैं।

कितना प्यारा दृश्य है।

प्यारा सा हरे भरे पानी से भरा हुआ तालाब--

सुंदर सा यह फोटो जिसमें साफ सफाई के साथ--

यह दुकान वॉलपेपर से--

यह फोटो एक साइकिल का है लाल और पीले काले रंग--

बहोत ही प्यारी है इसके अंदर--

कितनी प्यारी फोटो है इसके अंदर--

इसके अंदर हरी भरी घास और--